उसपे टायर लगा हुआ है।

और उसके बगल में एक ब्लैक कलर की ओमनी खड़ी है।

ब्रश है बिस्कुट हैं नमकीन हैं।

जहां पे फेशियल किट रखा हुआ है।

इस तस्वीर में एक टेंट लगा हुआ है जो पिंक और ब्राउन कलर में है।

और यहां पे अभी पेड़ के हल्के से पत्ते दिखाई दे रही है।

कुछ लोग तो यहां फाइल लेके खड़े हैं एक लड़की और एक लड़का।

यहां पे ब एक कार बन रही है।

उसके नीचे बोर्ड लगा हुआ है।

के बगल मे कुछ डेकोरेट फोटो शूट करने का पॉट ओट लगा है।

इस तस्वीर में एक ग्राउंड में टेंट लगा हुआ है ज--

बाहर कुछ लोग देखने के लिए खड़े है।

यहाँ पे दूसरी साइड एक बिल्डिंग और दिखाई दे रही है एक घर है वो।